यहाँ सामने में एक बाइक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक पौधा छोटा-छोटा दिख रहा है एक थोड़ा बड़ा पौधा है यहाँ पर डस्ट --

मूर्ति दिखाई दे रहा है दो मूर्ति है सामने में और अजीब -सा कलर में है और एक ग्रीन कलर में मूर्ति हैं।

यहाँ सामने में दिखाई दे रहा है कि वाइट - वाइट कलर हर तरह है और एक जेंट्स खड़े है और यहाँ घर बन रहा है और यहाँ पे--

यहाँ सामने में एक -एक बाइक लगी हुई दिख रहा है सामने में एक गेट है वाइट कलर की उसपे कुछ लिखा हुआ है एक झंडा का त --